यहाँ पर बहोत बड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है जिसमें सीढियाँ बनी हुई हैं।

इ जिम है जिम में बहुत सारी मशीनें दिखाई दे रही है जॉगिंग करने वाली और एक लड़का खड़ा हुआ है।

पर बहोत ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे बहोत सारी खिड़कियां हैं और ये कालोनी है और आगे के तरफ जाके रेड कलर का गेट ।

तीन सीट लगी हुई है और बहुत सारी चीज दिखा दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की सीट है।

यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है और पूरी बिल्डिंग एक जैसी दिखाई दे रही है सब में येलो कलर की पोताई है और रेड कलर की पट्टी है।